c ++ में friend function के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
friend function
हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
उबंटू os version 1110
g ++ compiler version 461
अब friend function के परिचय के साथ शुरू करते हैं
हम जानते हैं प्राइवेट data class के बाहर accessible नहीं होता है
प्राइवेट data access करने के लिए हम friend function प्रयोग करते हैं
friend function class का member function नहीं होता है
friend function object के उपयोग के बिना इन्वोक किया जा सकता है
friend function में passed हुआ आर्ग्यूमेंट इसके object की तरह उपयोग होता है
अब friend function की घोषणा देखते हैं
friend function की घोषणा के लिए friend कीवर्ड उपयोग होता है
फिर हम return _ type देते हैं
function _ name function का name है
फिर हम class के आर्ग्यूमेंट्स class _ name और object pass करते हैं
अब एक उदाहरण देखते हैं
मैंने editor पर पहले ही एक code टाइप कर लिया है
मैं इसे खोलूंगी
इस program में हम एडिशन operation क्रियान्वित करेंगे
ध्यान दें कि हमारा file नेम frnd cpp है
अब मैं code समझाती हूँ
यह iostream हमारी header file है
यहाँ हम std namespace उपयोग कर रहे हैं
फिर हमने class frnd घोषित की है
इसमें हमने प्राइवेट की तरह variables a और b घोषित किये हैं
यहाँ हमने function input को public की तरह घोषित किया है
इसमें हम यूज़र से input लेते हैं
यह compute की तरह हमारा friend function है
यहाँ हमने class f1 के आर्ग्यूमेंट्स class _ name frnd और object passed किये हैं
फिर हम class को बंद करते हैं
अब हम friend function प्रयोग करके class के प्राइवेट members frnd को access कर सकते हैं
यहाँ हमने compute function प्रयोग किया है
उसमे हम एडिशन operation क्रियान्वित करेंगे
हम variables a और b जोड़ते हैं
और फिर वैल्यूज़ return करते हैं
यहाँ हम object f1 प्रयोग करके nonmember function में प्राइवेट variables access करते हैं
यह हमारा main function है
इसमें हम class frnd का एक object f बनाते हैं
फिर हम object f प्रयोग करके function input को कॉल करते हैं
और यहाँ हम function compute को कॉल करते हैं और f को आर्ग्यूमेंट की तरह pass करते हैं
आप देख सकते हैं कि हमने function compute में आर्ग्यूमेंट f को passed किया है
यह pass by value method का प्रयोग करके किया जाता है
f f1 की value में passed किया जाता है
और यह हमारा return statement है
अब program निष्पादित करते हैं
अपने keyboard पर एक साथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर terminal window खोलें
अब type करें:
g ++ space frnd dot cpp space hyphen o space frnd enter दबाएं
type करें:
enter दबाएं
यहाँ प्रदर्शित होता है: enter the value of a and b
मैं 8 और 4 enter करुँगी
output इस प्रकार प्रदर्शित होता है:
the result is: 12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
अपनी slides पर वापस आते हैं
अब इसको सारांशित करते हैं:
इस tutorial में हमने सीखा
एक नियत कार्य में
दर्शाये link पर उपलब्ध video लिखें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
इस mission पर अधिक जानकारी निम्न link पर उपलब्ध है: